यहां पर एक फंक्शन हो रहा है।

जिसके सामने झालर-झालर लाइटे लगी हुई हैं।

और दो बसें दो-तीन बसें खड़ी है |

इनकी मैडम इन्हे देख रही है | यहाँ पे सफेद कलर का दिवाल बना हुआ है |

और एक गिलास को उल्टा कर के थाली के पास में रख दिया गया है।

जिसके पीछे बहुत सारे हरे-भरे घास हो गए हैं।